यह एक नेहरू पार्क है जिसमे --

यहाँ पर अधिक सारी बाइक हैं और --

यह एक नदी का दृश्य है जो कि --

जिसमे एक मंडप सजाया हुआ है। यहाँ पर --

इस दृश्य में एक ट्रेक्टर खड़ा हुआ है।

ये सब अपने मेट के ऊपर घुटना टेक के अपना कार्य कर रहे हैं।